और ये जमीन पर बैठे हुए हैं पीछे में एक लकड़ी का कुछ सामान है।

एक बीच से रास्ता भी है।

जिसमें की सामने में एक हेलमेट रखा हुआ है।

लड़का लोग खड़े हैं और सब बैठे हुए हैं बेंच पर।

और बहुत सारे ईट जुड़ चुके हैं।

चारों तरफ से शिशा से पैक है।

उसके पीछे एक गोमटी है।

पीछे में पंडाल है उसके पीछे एक पेड़ है।

जो साइड से बड़ा बड़ा तीन ठो बॉक्स --

पीछे लड़की झंडा फैरा रही है।

ऐसा लग रहा है कि कोयला है।

एक शटर है वाइट कलर का।

बहोत सारे सामान रखे हु--

और टी शर्ट पहना हुआ है।

बहुत सारे रूम है इसमें।

और ब्लैक कलर का जींस है और भूरा कलर का जूता पहना हुआ है।

ये एक कपड़ा का दुकान है।

इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

और रेड कलर का पट्टी अपने गले में लटकाये हुआ है वो भी बुक पकड़ा हुआ है।

बहुत सारे मेडिसिन रखे हुए हैं।

ऊपर में व्हाइट कलर का वॉल सीलिंग है उस साइड में एक काउंटर है।

दृश्य है जिसमें की तीन खाद के बोड़े रखे हुए हैं।

जाली भी है और सबको दाना देने के लिए रेड कलर का पॉट रखा हुआ है।

और बोडा का कलर व्हाइट --

इसका नाम है काव्या किताब घर।

बहोत सारे बुक रखे हुए है अंदर रैक में।

एक मिरर का दृश्य है।

स्टील का बेड --

जिसमे की बहोत ही सुंदर घर सजाया हुआ है।

सारे पाइप है और पीछे में बहोत सारे सामान है।

यह एक स्कूल का दृश्य है।

और बहुत सारे टीचर लोग पीछे बैठे हुए --

टेबल पे एक जग और चार-चार गिलास और छह गिलास है।

एक आदमी है।